जावा में स्ट्रिंग्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स कैसे बनायें स्ट्रिंग्स जोड़ना और सामान्य स्ट्रिंग्स ऑपरेशन को प्रदर्शन करना जैसे लोअरकेस का अपरकेस में परिवर्तन करना
इस ट्यूटोरियल में हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु 1110 जेडीके 16और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको जावा में डेटा टाइप का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरिल के लिए दिखाइ गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
जावा में Stringअक्षरों का अनुक्रम है
स्ट्रिंग्स शुरु करने से पहले हम पहले करैक्टर डेटाटाइप देखेंगे
अब इक्लिप्स पर जाएँ
बाकी कोड के लिए आवश्यक हमारे पास इक्लिप्स इडे और स्केलेटन है
हमने क्लास स्ट्रिंगडेमो बनाया है और मैन मेथड जोड़ा है
मेन मेथड में टाइप करें चार स्टार इक्वल टो सिंगल कोट्स में एस्ट्रिक्स
यह स्टेटमेंट स्टार नाम के साथ एक वेरिएबल और चार का टाइप बनाता है
यह वास्तव में एक अक्षर संचित कर करता है
कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द प्रिंट करें
चार लाइन को हटाएँ और टाइप करें चार सी1 इक्वल टो सिंगल कोट्स में सी चार सी2 इक्वल टो सिंगल कोट्स में आ चार सी3 इक्वल टो सिंगल कोट्स में र हमने तीन अक्षरो का उपयोग करके शब्द कार बनाया है
अब शब्द को प्रिंट करने के लिए उनका उपयोग करें
टाइप करें systemoutप्रिंट systemoutप्रिंट systemoutप्रिंट कृपया ध्यान दें मैं प्रिंटलन की जगह प्रिंट का उपयोग कर रहा हूँ इसलिए सभी अक्षर एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं
फाइल को सेव करें और रन करें
हम देख सकते हैं आउटपुट अपेक्षित है
लेकिन यह मेथड केवल शब्द को प्रिंट करता है लेकिन बनाता नहीं है
शब्द बनाने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का उपयोग करते हैं
इसका अभ्यास करें
मेन मेथड के अंदर से सभी को हटाएँ और टाइप करें स्ट्रिंग ग्रीट इक्वल टो हेलो लर्नर ध्यान दें शब्द स्ट्रिंग में एस अपरकेस है
और हम डैलिमीटर्स के रूप में सिंगल कोट्स के बजाय डबल कोट्स का उपयोग कर रहे हैं
यह स्टेटमेंट वेरिएबल ग्रीट बनाता है जो कि स्ट्रिंग का प्रकार है
अब मेसेज को प्रिंट करें
systemoutप्रिंटलन फाइल सेव करें और रन करें
हम देख सकते हैं कि मेसेज वेरिएबल में संचित हो गया है और यह प्रिंट हो गया है
स्ट्रिंग को जावा में भी जोड़ा जा सकता है
देखते हैं यह कैसे करें
मैं मेसेज से लर्नर को हटा रहा हूँ
हम भिन्न वेरिएबल में नाम को संचित करेंगे
स्ट्रिंग नामे इक्वल टो जावा अब हम मेसेज बनाने के लिए स्ट्रिंग जोडेंगे
स्ट्रिंग एमएसजी इक्वल टो ग्रीट प्लस नामे प्रिंट स्टेटमेंट से ग्रीट को मेसेज में बदले
फाइल को सेव करें और रन करें
हम देख सकते हैं कि आउटपुट ग्रीटिंग और नामे दिखा रहा है
लेकिन यहाँ उन्हें कोई स्पेस अल नहीं करता है
अतः एक स्पेस अक्षर का बनाएँ
चार स्पेस इक्वल टो सिंगल कोट्स में स्पेस ध्यान दें मैंने वेरिएबल नाम में सभी अपरकेस अक्षरों का उपयोग किया है अतः यह स्पष्ट है
आप इसे अपनी आवश्कतानुसार बदल सकते हैं
अब मेसेज में स्पेस जोड़ें
ग्रीट प्लस स्पेस प्लस नामे फाइल को सेव और रन करें
अब हम देख सकते हैं आउटपुट स्पष्ट और अपेक्षित है
अब कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन देखें
मैं शब्द हेलो के कुछ अक्षरों को अपरकेस में और शब्द जावा को अपरकेस में बदल रहा हूँ
हालाँकि जब यूजर इनपुट देता है तो हमारे पास इस प्रकार से मिश्रित वेल्यू होती है
अतः आउटपुट देखने के लिए फाइल को रन करें
हम देख सकते हैं आउटपुट स्पष्ट नहीं है
अतः इनपुट को स्पष्ट करने के लिए स्ट्रिंग मेथड्स का उपयोग करें
टाइप करें ग्रीट इक्वल टो greettoLowerCase यह स्टेटमेंट स्ट्रिंग ग्रीट के प्रत्येक अक्षर को लोअरकेस में बदलता है
नामे इक्वल टो nametoUpperCase यह स्टेटमेंट स्ट्रिंग नामे के प्रत्येक अक्षर को अपरकेस में बदलता है
फाइल को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग मेथड का उपयोग करने के बाद आउटपुट अब स्पष्ट है
इप प्रकार हमने स्ट्रिंग बनाए और स्ट्रिंग ऑपरेशन्स को कार्यान्वित किया
यहाँ अधिक स्ट्रिंग मेथड है और उनकी चर्चा हम कठिन विषय पर कार्य करते समय करेंगे
अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरिल में हमने सीखा स्ट्रिंग को कैसे बनाएँ और जोडें
और कैसे कार्यान्वित करें जैसे लोउरेकस और अपरकेस को बदलना
इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रूप में जावा में स्ट्रिंग के कॉनकैट मेथड के बार में पढ़ें और ज्ञात करें कि यह स्ट्रिंग जोड़ने से कैसे भिन्न है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें